ये फुव्वारा है फुव्वारे में हाथी के सूंड से पानी निकल रहा है। बहुत सारे बच्चें खेल रहे हैं।

एक छोटी सी किराने की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारा खाने का सामान है मैगी धरी बिस्किट है टॉफी है ब्रेड है चाकलेट है जैम है।